देख रहे है गांव में चूल्हा भी

उस तस्वीर में देख रहे है ये तस्वीर बहुत पुराना है यहां है तथा दुर्गा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है यहां पर दुर्गा पूजा धूम-धाम से मनाया यहां पर मूर्ति स्थापित है यहां देखिये लाइटिंग --

सजाई गई है। यहां दुर्गा पुजा के टाइम मे नौ पूजा तक भारी भीड़ लगती है। यहां पर दिया जलाने में भाड़ी संख्यक मे लोग आते है दिया जलाते है मातारानी को पूजते है मातारानी तो सबके दिल मे --

आपके लिए सबके लिए सब कुछ फ़्री है घुमिये फिर्ये ऐश करिये मौज करिये जिंदगी का है ऐश मौज के लिए ही